bash में more on arrays के tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
* एक array से एक अवयव को कैसे extract करें यानी निकालें
* एक array में एक अवयव को कैसे replace करें यानी बदलें
* एक array में एक अवयव कैसे जोड़ें और
* एक array से एक अवयव कैसे हटायें
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको लिनक्स operating system से परिचित होना चाहिए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
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ * ubuntu लिनक्स 1204 os
और * gnu bash version 4110
अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है
अब देखते हैं कि एक array से एक अवयव को कैसे extract यानी निकालते हैं
* array में अवयवों को किसी भी स्थिति से extracted किया जा सकता है
* यहाँ स्थिति index number है
* ध्यान दें कि index number हमेश zero से शुरू होता है
रचनाक्रम निम्न प्रकार है:
arrayname square bracket में at साइन @ colon position colon उल्लिखित स्थिति से extracted किये जाने वाला number of elements
अब एक उदाहरण की मदद से समझते हैं
अपने keyboard पर एकसाथ ctrl + alt और t कीज़ दबाकर terminal खोलें
type करें: gedit space array2 sh space & ampersand साइन enter दबाएं
अब अपनी array2 sh file में यहाँ प्रदर्शित की तरह code type करें
अब मैं program समझाती हूँ
यह शीबैंग shebang line है
यह declare command अवयवों के साथ एक लिनक्स named array घोषित करता है
* debian debian * redhat रेडहैट
* ubuntu ubuntu और * fedora fedora
यह echo command array में सारे अवयवों की सूची print करेगा
अगला echo command extracted किये हुए अवयवों को print करेगा
command ${linux @: 1:2} index one जो कि रेडहैट है से शुरू करके दो अवयवों को print करेगा
अब terminal पर जाते हैं
सबसे पहले chmod space plus x space array2 sh टाइप करके file को निष्पादन योग्य बनाते हैं enter दबाएं
type करें: dot slash array2 sh enter दबाएं
हमें output प्राप्त होता हैoriginal elements in an array linux: debian redhat ubuntu और fedora
the two elements starting from index one redhat: redhat और ubuntu
अब अपनी slide पर वापस आते हैं
हम देखेंगे कि array में अवयवों को कैसे replace यानी बदलते हैं
array में मौजूदा अवयव को निम्न रचनाक्रम प्रयोग करके बदला जा सकता है
arrayname square brackets में n equals to single कोट्स में newword
यहाँ n index number या अवयव की संख्या है
अपने text editor पर वापस आते हैं
linux 2 = mandriva
यह command तीसरे अवयव ubuntu को mandriva से बदलेगी
यह echo command प्रतिस्थापन यानी replacement के बाद array लिनक्स के सारे अवयवों को दिखाएगी
अपने terminal पर वापस आते हैं
अब दोबारा निष्पादित करते हैं
यह प्रतिस्थापन के बाद सारे अवयवों को दिखाता हैdebian redhat mandriva और fedora
अब slides पर आते हैं
हम देखेंगे कि array में एक अवयव कैसे जोड़ें
arrayname equal to round bracket खोलें double क्वोट में dollar साइन $ curly bracket खोलें arrayname square bracket खोलें at साइन @ square bracket बंद करें curly bracket बंद करें
अब एक उदाहरण की मदद से इसे समझते हैं
code file पर जाते हैं
हाईलाइट की हुई command एक नए अवयव suse को array लिनक्स में संलग्न करेगी
फिर suse संलग्न करने के बाद हम सारे अवयवों को echo करेंगे
terminal पर जाते हैं
मैं prompt clear करती हूँ
हम program को दोबारा निष्पादित करते हैं
output प्रदर्शित होता है all elements after appending suse : debian redhat mandriva fedora और suse
अब अपनी slide पर वापस आते हैं
हम देखेंगे कि array से एक अवयव कैसे हटाते हैं
array से एक अवयव निम्न रचनाक्रम प्रयोग करके हटाया जा सकता है
unset space arrayname square bracket खोलें index number square bracket बंद करें
code file पर जाते हैं
यहाँ हम unset command प्रयोग कर रहे हैं
और हम array लिनक्स से तीसरा अवयव mandriva हटाएंगे
फिर mandriva को हटाने के बाद दोबारा हम सारे अवयवों को echo करेंगे
अब terminal पर जाते हैं
हम program निष्पादित करेंगे
यहाँ mandriva हटाने के बाद अवयवों की सूची है
debian redhat fedora और suse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
अपनी slides पर वापस आते हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
* array से अवयव को extract यानी निकालना
* array में अवयव replace यानी बदलना
* array में अवयव जोड़ना और
* array से अवयव हटाना
एक नियत कार्य में #7 length यानी लम्बाई के array names2 घोषित करें और निम्न operations क्रियान्वित करें
* index two से शुरू करके तीन अवयवों को extract करें
* तीसरे अवयव को debian से बदलें और प्रदर्शित करें
array के अंत में कोई नया name संलग्न करें
नीचे दिखाए link पर उपलब्ध video देखें
यह spoken tutorial को सारांशित करता है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
इस mission पर अधिक जानकारी नीचे दर्शाये link पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद